कुछ बड़े फूल हैं कुछ छोटे फूल हैं और बहोत प्यारे प्यारे कलर के फूल हैं।

जोकि बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं।

ऊपर जाके नीचे खाई --

जोकि बहुत खूबसूरत दिख रहा है।

चेयर और टेबल भी दिख रहे हैं।

बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई हैं।

डांस क्लास का सीन दिख रहा है।

बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं और कुछ छोटे पेड़ भी दिख रहे हैं।

जो कि लाल टी-शर्ट मे और जींस मे है।

बड़ा सा बेड भी लगा हुआ है।

इसकी इसपे कुछ हरी पत्तियां भी दिखाई दे रही हैं।

अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं।

यहाँ पर अलग अलग तरह की मछलियाँ दिखाई दे रही हैं।

यह कोई स्कूल के फंक्शन का सीन दिख रहा है।

और कूदने का झूला भी है।

यह एक गार्डन है जोकि बहुत बड़ा और बहुत अच्छा दिख रहा है।

और घासे भी लगी हुई है।

और कच्चा रोड नजर आ रहा है।

बहुत सारी चीजें दिख रही हैं।

जहाँ पर अलग अलग तरह की बुकें दिख रही हैं।

ये बहोत बड़ी दुकान नजर आ रही है।

यह कोई जू का चित्र दिख रहा है।

कुछ सूखी घास भी दिख रही है।

यह कोई आश्रम का सीन दिख रहा है यहाँ पर --

और ऊपर लिखा हुआ है ब्रह्म विद्यालय एवं आश्रम --

यहाँ पर तीन आदमी आए हुए हैं जोकि पानी का मजा ले रहे हैं।

जो कि पिंक कलर की पुती है।